यह शायद से जंगल के बीच में होगा।

गाड़ी अरुणाचल प्रदेश का लग रहा है क्योंकि गाड़ी नंबर पे ए_आर लिखा हुआ है।

यहां पे कई सारे लोग एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं।

यह एक फॉरेस्ट टाइप कुछ दिख रहा है।

और इसके पार्किंग एरिया में कुछ गाड़ियां भी लगी हुए हैं।

यहां पे लाल और हरा कलर का कुछ कुर्सियां भी लगा हुआ है।

दोनों भगवान बहुत बड़ा माला भी पहने हुए हैं।

छोटा सा एक कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट लग रहा है।

यूनियन बैंक का ऊपर यूनियन बैंक भवन लिखा हुआ है।

यहां पे छोटे छोटे कुछ तो कुटिया दिख रहा है।

घर के बाहर दो गाड़ियां भी लगी हुई है।

यहां पे कई सारे छोटे बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

फिर कुछ लोग लाल कुर्ता में दिख रहे हैं या शायद से मंदिर के बाहर का फोटो होगा क्योंकि गेट पर एक घंटी लगी हुई है।